कि किसी ने पिरामिड की कापी को यहाँ पे बनाने की कोशिश की हो --

मिरर लगा है उसपे से इस बंदे को जिसने यह तस्वीर खिची है उसे भी देख सकते है | इन सलोन को नाई कि दुकान भी कहते है |

पीछे एस_बी_आई का बैंक की ब्रांच है।

और अंदर जाने का रास्ता है दाई और इसका एटीएम है।--